टेबल रखा हुआ कचरा पड़ा हुआ है। छोटी कुर्सियाँ रखी पम्पलेट लगा हुआ है। धू --

काउंटर दिखाई दे रहा है दिखाई दे रही है पत्थर --

कुर्शी रखी हुई है छोटे बच्चो के कपड़े टंगे हुए है ।

वाईट कलर की लाईट लगी हुई है ।

खंबे दिखाई दे रहे हैं। लाइटें लगी हुई हैं भाईट कलर की। पंपलेट लगे हुए हैं तस्वीरें लगी हुई हैं।

बेनर बोर्ड लगा हुआ है खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं कुर्सियां रखी हुई है पंखे लगे हुए है सी.सी. कैमरा दिखाई दे रहा हैं।

जेन्ट्स लोग खड़े हुए है कुछ बाते कर रहे है कुछ फॉर्म भर रहे है कुछ कम्प्यूटर पे काम कर रहे है कुछ खड़े हुए --

आलू भुजिया रखी हुई है टॉफी रखी हुई है अंडे रखे हुए है।

कम्प्यूटर रखा हुआ है। कुरकुरे चिप्स का पैकेट रखा हुआ है। शैम्पूल लगे रखे हुए हैं।

सटर लगी हुई है बेंच रखी हुई --

ब्लेक कलर के पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है लकड़ियां दिखाई दे रही है खम्भे दिखाई दे रहे है --

स्टेज बने हुए है। लाइटे लगी हुई है व्हाइट कलर की बड़ी-सी बेंच रखी हुई है। टेंट लगा हुआ है। बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

आयुष्मान हॉस्पिटल खुला हुआ है आयुष्मान --

तार वाली केबिन दिखाई दे रही है निचे केले के पत्ते दिखाई दे रहे है ।

तालाब भरे हुए है बिल्डिंगो में बहुत सारी खिड़कियाँ दिख --

दिखाई दे रहे हैं जहाजो में कुछ व्यक्ति लोग बैठे हुए है व्हाइट कलर --

इस भवन में एक बोर्ड लगा हुए है। आलमारी रखी हुई है काले कलर की। कुर्सियां रखी हुई है ब्रेंच रखी हुई है बोहोत सारी।

बादल दिखाई दे रहे वाईट कलर के रेल वाली पटरी गई हुई है ।

लाइटे लगी हुई है ।